के पास खड़ा हुआ है एक एक्टिवा खड़ी हुई है यहां पे और यहां पे सफेद रंग की गाड़ी है।

यहां पे यहां चॉकलेट बिस्किट भी ले सकते हो। यहां पे ये फ्रिज छोटा फ्रिज जिसमें जिसमें चॉकलेटी रखी जाती है।

यहां पे बुद्ध राजा किराना स्टोर है यहां पे छ बजे मच्छर मार--

इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं।

जो लाइट को जो लगा जो लाइट वैसी होती है उसको आगे पिछे करता है।

गाड़ियां खड़ी हुई हैं बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।